और उनके पीछे एक बड़ा-सा बैनर लगा हुआ है बैनर में किनारे काफी बड़े यहाँ पर लगे हुए है।

यहाँ एक मेईन गेट दिखाई दे रहा है झुला है और आस-पास छोटी बॉउंड्री दिखाई दे रही है।